सामने एक दुकान हैजिसमें कांच के रैक बने हुए है जिसमें नीचे सफेद कलर हैऔर पीछे कुछ आदमी बेठे ए हुए है पीछे दीवार में---

टीवियां लगी हुई हुई हैं और साइड में दीवाल में ए_सी लगी हुई है ऊपर छत ग्रे कलर की है नीचे एक आदमी बैठा है।

साइड में एक ब्रिज बना है जो ऊपर हरा दिख रहा है और रेलिंग उसकी कत्थई दिख रही है सामने बहोत--

हरा और सफेद दिखाई दे रहा हैजिसके चारों ओर ठास लगे हैं और सामने कुछ छोटे-छोटे पेड़े लगे हुए हैंसामने एक घर दिख रहा है जिसके खंबे---

प्याज है ककड़ी हैआधा नींबू और एक हरी मिर्च दिख रही है।

माई और नीचे नीले कलर से चश्मे वाला लिखा हुआ है और से नीचे एक मोटर साइकिल दिख रही है एक --

सफेद दीवाल है और एक उम् लकड़ी लगी ल मतलब खंभा लगा हुआ है और साइड में--

सामने एक स्टेज देख रहा है जिसमें नीचे क्रीम कलर का चादर है और सामने सोफे रखे हुए है।

बीच में चॉकलेटी कलर का है और दोनों साइड क्रीम कलर के रखे हुए हैं जिनके ऊपर अह पिंक कलर के तकिए रखे हुए हैं और दोनों साइड गुलदस्ते रखे हैं जो--